सेंटर टेबल पर बारकोड के रखे हुए है।

जहाँ पर सभी लड़कियों ने व्हाइट कलर का ड्रेस और रेड कलर की चुनरी ओढ़ रखी है।

''यहां पर एक मेन्स पार्लर दिख रहा है जो कि बहुत ही शानदार है। यहां पर अलमारी में एक शोकेस बना हुआ है जिसमे कॉस्मेटिक्स सामान और स्प्रे परफ्यूम वगेरा रखे हुए हैं।''